अ ब अम्म सिल्वर कलर की चेयर है जिस पे बैठे हैं बहोत सारी बुक्स रखी है।

कुछ आदमी छत पे बस की छत खड़े हैं और ऊं सामान रख रहे है।

यहां पे फंक्शन हो रहे हैं अह यहां पे अह ग्राउंड है।

यहां पे स्टेज बना हुआ है। यहां पर एक आदमी खड़ा है।

ये एक स्टोर रूम है यहां पे लोहे के टेबलस है लोहे का --

यहां पे शादी हो रही है यहां पिंक कलर का टैंट लगा हुआ है यहां पे डेकोरेशन हो रखी है व्हाईट और रेड फ्लावर का।

ये एक अ अं शॉप है।

आम मजदूर काम कर रहे हैं सीमेंट मसाला ला रहे हैं छत म छत बन रही है।

ई रिक्शा खड़े हैं दो वृक्ष खड़े हैं एक आदमी खड़े हैं।

पीछे एक अं मंदिर बना हुआ है आसपास रोड है।

और आसपास डेकोरेशन है। ये विंडो है ब्राउन विंडो है। ब्राउन गेट है।